मंच पर एक पर्दे का उपयोग किया गया है जोकि लाल कलर का है।

इस इमेज में जो दिख रहा है वह एक मेले का दृश्य है।

कुछ नृत्यकाये सामने नाच रही है जो की पीले कलर के वस्त्र पहने हुए हैं।

बोर्ड में एक लेडिज का फोटो भी बना है जो की ग्रीन कलर का सूट पेहनी हुई है।

इस इमेज में जो दिखाया गया है वह एक चाय की दुकान है जिसका नाम रोहन चाय सेंटर चाय कॉफी रखा गया है।

सामने की ओर दो डस्टबिन रखी गई हैं जोकि एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की डस्टबिन हैं।

इस इमेज में एक क्रेन दिखाई दे रही है जो की येलो कलर की है इसकी सूंड बहोत लंबी है।

नीचे फर्श में सीमेंटेड ईटों का यूस किया गया है जो कि ब्लैक और रेड कांबिनेशन में है।

पीछे हरे कलर के कपड़े लगे हुए हैं और जो कारखाना दिखाई दे रहा है उसके सामने कुछ बच्चे भी टहल रहे हैं।

सामने लिखा है विद्या इंस्टीट्यूशन इनफॉरमेशन सेंटर और एंट्री गेट भी लिखा है जो की इंग्लिश में लिखा गया है।

सामने एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का डस्टबिन रखा हुआ है और चारों तरफ से लाइटिंग की गई है।

इस इमेज़ में पोल्ट्री फार्मिंग को दिखाया गया है जिसमें नीचे की ओर कुछ पेटियां रखी हुई हैं जो कि चिकन के बच्चों की पेटियां होती हैं।

इस इमेज में एक पार्क या गार्डन को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं।

सामने एक ग्राउंड है जो कि छोटा सा ग्राउंड है और जिसमें ग्रीन कलर के कई सारे पेड़ लगे हुए है।

इस इमेज में रात का दृश्य दिखाया गया है जिसमें एक किराना स्टोर की दुकान दिख रही है इसका नाम सचिन किराना रखा गया है जो की हिंदी में लिखा गया है।

इस इमेज में शाम का दृश्य है जो की काफी खूबसूरत लग रहा है।

एक लेडिस खड़ी है जो की रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है उसके हाथ में एक बच्चा भी है जो की येलो कलर के कपड़े पहना हुआ है।

आगे लाइटनिंग के पोल भी लगाए गए है जिनमे लाइटें लगी हुई है।

यहां पर काफी सारे टेंपो खड़े हुए हैं टेंपो का कलर ग्रीन कलर और येलो कलर का दिखाई दे रहा है।

वो सारी कार्स भी खड़ी हैं जो की सभी कार्स व्हाइट कलर की दिख रही हैं।

पीछे की तरफ कुछ टंगा हुआ है जो कि पीले रंग का दिखाई दे रहा है।